के बाहर ने कुछ बाइक्स स्कूटी खड़ी हुयी है।

जिसमे के साइड मे एक दुकान और है एवं इसके ऊपर उम्म्म मंजिल भी है।

का पोस्टर लगा हुआ है इसमें एक महिला छापी हुई है एक पुरुष छपा हुआ है ।

यहाँ पर एक लड़की माइक ले कर गाना गा रही है एवं यह स्टेज गुब्बारों से सजा हुआ हैं यहाँ पर दो गिटार रखी हुई हैं एक कुर्शी रखी हुई है ।

यहां पर एक व्यक्ति पूज ना आरती कर रहा है आरती की थाल रखी हुई है जिसमे --

एवं यहां पर एक व्यक्ति पैरो से उस मशीन को धक्का दे रहा है।